यहाँ पर एक पिंजरा है जो हरे रंग का है और उसमे शेर बंद है। शेर का कलर --

हम्म्म पीला है और उस पर काले कलर के चिट्टे हैं और --

क्लासरूम है जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं और अ एक सर है जिस जो लाल कलर की टी-शर्ट और व्हाइट कलर का पैंट पहना हुआ है।

के कलर की गाड़ी खड़ी हुई है और जमीन का कलर काला है और एक टॉवर लगा हुआ है म्म और तार लगे हुए हैं। खुला आसमान है और एक हरे कलर का पेड़ है और झीने लगे हुए हैं।

और बहुत सारे पेड़ हैं एक बिल्डिंग है जिसका सफ़ेद अह और हरा अ रंग है।

और एक अ दीवाल है जिसका कलर हरा है और उसमें काली कलर की फेसिंग लगी हुइ है और यहाँ पर एक पेड़ है और एक पिल्लर है काले कलर का और खुला आसमान है काफ़ी।

और एक सीजर रखी हुई है डेस्क पर जो एअ नीले रंग की है और एक बाल्टी रखी हुई है जो सफेद कलर की है और उसके साइड में बक्स-बक्सा रखा हुआ है।

एक लड़का है जो तबला बजा रहा है और एक लड़का है जो पियानो बजा रहा है और एक लड़का खड़ा हुआ है जिसने कुर्ता पहना है और चश्मा पहना है और उसकी दाढ़ी है।

प्रति व्यक्ति दस रुपये बच्चे पांच रुपये विदेशी राजस्थान प्रति व्यक्ति पचीस् रुपये विदेशी अन्य प्रतीत व्यक्ति पचास रुपये फोटोग्राफी दस रुपये फोटोग्राफी विदेशी --

ए जो ज़मीन खोद रहा है और ज़मीन का रंग हरा हैँ जिसपर काफ़ी सारी हुई है और खुला आसमान है आसमान का रंग नीला है ।